और पीने में तो बहुत ही टेस्टी होती है कॉफ़ी कॉफ़ी पीने का तो सर्दी में तो मज़ा ही कुछ और है कॉफ़ी का कॉफ़ी हेल्थ के लिए तो हार्मफुल होती है पर पीने में बहुत ही अच्छी--

मेज बहुत अच्छी लग रही है दिखने में मुझे लगता है किसी डी_आइ_वाई का -- तरफ इशारा है कुछ घर के वेस्ट मे --

ये इमेज मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज की है पर जो भी है बहोत ही अच्छी लग रही है दिखने में शायद लकड़ी से बनी हुई है जो वुड होती हैं वुड के द्वारा ये बनाए गए हैं जो भी ये हैं।

कटेज होता है कुछ भी हो सकता है तो आप नहीं कर सकते कुछ भी तो यहाँ पर आइये घूमिये खाइये और अपने घर को जरूर जाइये यहाँ मत सोना मच्छर काटेंगे ----

चारों तरफ बहुत ही सुंदर वादिया है दिखने में ग्रीनरी पहाड़ और सब बहुत अच्छा लग रहा है बहुत पीस फुल एरिया लग रहा है दिखने में बहुत ही सुंदर एरिया है दिखने में।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

वॉव उनीक् घर है ग्रीन कुछ ऑरेंज कुछ रेड ये कुछ तो डाइफेरेंट है कुछ समझ नहीं आ रहा वाइट कलर का भी है इसको डेकरेट किया--

खेलने गए हैं ई इन्हें खिलाने के लिए चार्जेज पेय करने होते हैं| अ इतने ज़्यादा चार्जेज नहीं होते हैं पर चार्जेज तो जाते ही हैं।